चद्दर के ऊपर सोलर पैनल दिखाई दे रहा है।

मुझे यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है।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

मुझे यहां पर कई सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर एक पुरुष का हाथ दिखाई दे रहा है।